यह एक मानसरोवर स्टेशनरी है.

यह एक यूनियन बैंक हे.

साइड में बहुत सारे लकड़ी के सामान रखे हुए हैं।

बहुत सारी दवाईयां का शीशी है तथा बहुत सारी दवाई कार्टून में है.

इसमें अमरूद है इसमें एक तराजू है.

एक व्यक्ति ट्रक में समान बोझ रहे हैं दूसरे व्यक्ति ट्रक की और जा रहे हैं समान को लेकर.

यह एक होटल जैसा प्रतीत हो रहा है जिस के चारो और दीवार में बेलुन्स लगा हुआ है.

बहुत सारी खिड़किया हैं बहुत सारी कॉलम है.

यह एक कपड़े की दुकान है जिसमें बहुत सारे ब्लेजर रखें हुये है।

जिसमें ऑफर लिखा हुआ है।

रिस्पेक्ट एवरी कलर एक साइकिल रखी हुई हैं.

एक बिच मे रस्ता है कुछ सन फ्लावर हैं.

एक है बहुत सारे हरे हरे घास है.

एक इमली का पेड़ है.

यह एक जोका कैफे है जिसमें दो ऐ_सी लगी हुई है.